येलो कलर से पेंटिंग किया हुआ है।

एक फ्रेम दिखाई दे रहा है और इसमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक घर का अंदर है इसमें एक सफेद कलर का टेबल है इसका ऊपर में--

साइड में एक रास्ता जैसा भी दिखाई मिल रहा और बहुत ज्यादा छोटा छोटा घास लोग दिखाई मिल--

इसमें एक गेट भी है जो कि ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है अंदर में।

यहां में व्हाइट कलर का बाइक भी पार्किंग है किया हुआ है और--

इसमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

विंडो भी है जिसपे पर्दा भी लगा हुआ है।

और दरवाजा दिखाई दे रहा है।